गाइस यहाँ पर गा गाना सिखाया जाता है बोहोत अच्छा है देखो ऊपर गिटार से गाना गाया जा रहा है । सब अच्छा लग रहा है ।]

हेलो गाइज आप लोग देख सकते है कि कितना अच्छा डांस कर रही है इसके डांस करने का जो पोज का जो पिक है वो बहोत ही खूबसुरत लग रहा है।

हेल्लो गाइज आप लोग देख सकते हैं। ये सामने खड़ा लड़का हिप हॉप करने की कोशिश कर रहा उसके दोनों हाथ में जुत्ते हैं।

यह बीच में लड़की है। इसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है बहुत ही अच्छा नाच कर रही है।

हेलो गाय्ज आप लोग देख सकते है की यह का नजारा एक दम कारन अ टाईप का लग रहा है जेसे लग रहा है की बहोत पुराना जामना हो। यहाँ पे मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है की यह कहाँ का सिन है। यहाँ पे कोई भी हरियाली नहीं है।

हेल्लो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये एक त समुन्द्र के पास ऊपर एक ब्रिज है जहाँ पे देखिये समु यहाँ से समुन्द्र नजारा पहाड़ी नजारा सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है तारों तरफ --